इधर बहुत से लोग बैठे हैं और उसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा है इसका इंटीरियर लकड़ी से बना है और ऊपर शायद से सीमेंट से और एक आगे--

जो की सफेद और भूरे रंग से बनी है और पा बाहर बहोत सी ग्रील लगाई गई है।

यह हिमाचल की पुरानी चीजें हैं।

ब्लू कलर का जैकेट और ब्लू पैंट पहनी है और अंदर सफेद कलर की शर्ट पहनी है और इसने जूते अलग अलग --

स्क्रीन लगी है और पीस पीछे पी_सी भी रखा गया है मेरे हिसाब से यह कोई--

और यहां सफेद रंग की दीवारें है।

मुझे इस पिक्चर में बहुत से फूल दिख रहे हैं जो की अलग अलग रंग के हैं और अलग अलग प्रकार के हैं यहां मेरे हिसाब से कोई फूलों की दुकान है।

यह अलग से प्रकार की है और बाहर कुछ लोग खड़े हैं और एक चश्मे वाला लड़का खड़ा है।

बिल्डिंगे रखी गई है और बहुत बड़े बड़े जहाज हैं।